और कुछ स्टूडेंट्स अपने नोट्स में नोट्स ले रहे हैं।

डोर ओपन है और पीछे राइट साइड में बाइक भी दिख रही है।

बहुत अच्छी कर है ये।

लोगों का जुम्मा हुआ है।

बहुत सारे टेबल्स है और चेयर्स भी है।

बैकग्राउंड में खेल रहे हैं।